लग रहा जैसे किसी फैक्ट्री का --

इसके वाइब्रेन कलर मन को लुभा रहे हैं।

महिलाओं को जेबरात बहुत पसंद होते हैं और उनकी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि जो कुछ भी हो हम जेबरात लें।